यहाँ पे बहोत सारी चार पहिया वाहन लागि हुई है तथा इन वाहनों के मध्य एक बिजली का खंबा है। त--